सामने रोड दिखाई दे रही है जिसके सामने हमे गड़िया खड़ी हुई दिखाई दे रही है तथा वहा कुछ बहुत सारे लोग देख रहे है।

इतना यहाँ पर लोहे का गेट भी दिखाई दे रहा है उसके सामने मैदान दिखाई दे रहा है।

रोड भी दिखाई दे रही है यहां पर हमे एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है तथा हमें पेड़ भी दिखाई दे रहे है तथा कुछ बिजली के --

यहाँ ह-हमे एक रूम दिखाई दे रहा जहा काफी सारे स्टूडेंट बैठे हुए दिखाई दे रहे है तथा हमे टेबल ओर अ कुर्शी टेबल ओर कुर्सी भी दिखाई दे रही है तथा वक व्हाइट कलर का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें एक रेड और व्हाइट कलर के बलून लगे हुए दिखाई दे रहे हैं तथा चेयर और कुर्सी टेबल रखे हुए दिखाई दे रहे --

खा खुला आसमान दिखाई दे रहा है जहाँ हरे-भरे --